यहाँ पर भी हमें एक मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है जो की उसके अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर ये गाड़ियों की एजेंसी बनी हुई हैं उउउउउ और वहाँ पर बाहर भी बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई दिखाई दे रही है और --

उम् और वहाँ पर उममम बहुत ज्यादा व्यक्ति दिखाई दे रहे है और पुलिस भी वहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही है और वहाँ पर क एक कुछ मैदान में हरी-भरी घास वी लगी हुई दिखाई दे रही है जो कि खूबसूरत है।

गाइस यहाँ पर हमें कुछ बड़े-बड़े मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि बहोत ही लंबे और ऊंचे मकान बने हुए हैं और वहाँ पर एक मैदान डाला हुआ है और उस मैदान में एक --

हमे एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर बैठने के लिए वहाँ पर कुर्सीया डली हुई दिखाई दे रही है जो कि लाल कलर की है और वहाँ पर स्टैन्ड गड़ी हुई दिखाई दे रही है जहाँ पर--